भी बेटा हुआ दिख रहा है ।

बहुत सारे पर्दे भी लगे हुए दिख रहे हैं।

बड़ा पोस्टर भी दिख रहा है।

एक स्विमिंग पूल दिख रहा है।

एक बड़ा गेट भी नजर आ रहा है।

इस चित्र में एक बड़ा होल दिख रहा है।

लोग बैठे हुए नजर आ रहे हैं।

कुछ मूर्तियां भी दिख रही हैं।

ब्रिज दिख रहा है यहां--

यहां एक पेड़ भी दिख रहा है ।

एक आदमी खड़ा दिख रहा है।

इस चित्र में बहुत सारे लोग काम करते--

एक अलमारी दिख रही है यहां एक पेन भी दिख रहा है।

एक बेड नज़र आ रहा है यहाँ एक डस्टबिन नज़र आ रहा है यहाँ --

एक पोस्टर भी दिख रहा है यहां कुछ पेड़ भी दिख रहे हैं।

हॉल दिख रहा है यहां ब्लैक कलर का बड़ा बोर्ड दिख रहा है यहां--

एक आदमी बैठा दिख रहा है यहां बहुत सारे कपड़े--

कुछ लोग भी दिख रहे हैं यहां--

एक बड़ा मैदान दिख रहा है।

यहां बहुत सारी घास दिख रही है यहां--

एक बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है यहा--